पेड़ भी दिख रहे है बोहोत सुंदर लग रहे है यहाँ पर जो बादल भी दिख रहे है यहाँ पे ये नाव भी बोहोत की डली हुई है कि बहुत सूंदर लगी --